जैसे की आप देख सकते हैं यहाँ पर पाच कुछ अजीब से मटके टाइप रखे हुए हैं और ये बहोत ही सुंदर लग रहे हैं। इसके पीछे दीवाल है और ये अति सुंदर एक रेड है एन्ड ग्रीन एन्ड ब्लू कलर का एक --